अ कई पेड़ लगे --

इस इमेज में गाइस कई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है। तार जा रहे है। काई सारे बादल हैं काफी अच्छे।

इस व्यू में गाइस एक कार बाइक्स ली गई है ईमेज है। सामने रोड है एक ट्रक खड़ा हुआ है। कई सारी बिल्डिंग है बादल दिख रहा है।